dwsim में continuous stirred tank reactor cstr को सिमुलेट करने पर इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे: continuous stirred tank reactor cstr को simulate करना
cstr में एक अभिक्रिया के लिए conversion और residence time की गणना करना
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ dwsim 43 और windows 7
इस tutorial में प्रदर्शित प्रक्रिया अन्य os जैसे linux mac os x या arm पर fossee में भी समान है
इस tutorial के अभ्यास के लिए आपको flowsheet पर components को जोड़ने का ज्ञान होना चाहिए
thermodynamic packages चुनें
material और energy stream जोड़ें और उनकी विशेषताएं निर्दिष्ट करें
और reaction manager में kinetic reaction जोड़ें
पूर्वापेक्षित tutorials हमारी website पर उल्लिखित हैं
आप इन tutorials को सभी सम्बंधित files को इस site से access कर सकते हैं
हम एक isothermal cstr से exit composition को निर्धारित करने के लिए एक flowsheet विकसित करेंगे
यहाँ हम reaction property package और inlet stream conditions देते हैं
आगे हम cstr dimensions और reaction kinetics देते हैं
मैंने अपनी machine पर dwsim पहले ही खोल लिया है
file menu पर जाएँ और new steadystate simulation चुनें
simulation configuration wizard window दिखती है नीचे next पर click करें
tab compounds search टैब में type करें ethanol
chemsep database से ethanol चुनें
उसी प्रकार acetic acid जोड़ें
अगला water जोड़ें
अगला ethyl acetate जोड़ें
next पर click करें
अब property packages आता है
available property packages से nrtl पर doubleclick करें
फिर next पर click करें
हम flash algorithm पर लाये गए हैं
default flash algorithm से nested loops vle चुनें
next पर click करें
अगला विकल्प system of units है
system of units में हम c5 चुनेंगे
फिर finish पर click करें
अब simulation window को maximize करें
अब एक feed stream प्रविष्ट करें जो cstr में प्रवेश करता है
object palette पर जाएँ
streams section से flowsheet पर material stream को drag और drop करें
अब इस stream का name बदलकर feed करें
अब हम feed stream विशेषताओं को उल्लिखित करेंगे
input data पर जाएँ
यदि पहले से चयनित न हो तो flash spec में temperature and pressure tp चुनें
default रूप से flash spec में पहले से ही temperature and pressure चयनित है
temperature को 70 degc करें और enter दबाएँ
pressure को 1 bar करें और enter दबाएँ
mass flow को 3600 kg/hour करें और enter दबाएँ
अब feed stream compositions को उल्लिखित करते हैं
composition में यदि पहले से चयनित न हो तो basis में mole fractions चुनें
default रूप से basis में पहले से ही mole fractions चयनित है
अब ethanol के लिए amount में 048 प्रविष्ट करें और enter दबाएँ
acetic acid के लिए 05 प्रविष्ट करें और enter दबाएँ
उसी प्रकार water के लिए 002 प्रविष्ट करें और enter दबाएँ
ethyl acetate के लिए 0 प्रविष्ट करें और enter दबाएँ
दायीं तरफ accept changes के लिए इस हरे tick पर click करें
आगे हम kinetic reaction परिभाषित करेंगे
tools में reactions manager पर click करें
chemical reactions manager window खुलती है
chemical reactions टैब में हरे रंग के add reaction button पर click करें
फिर kinetic पर click करें
add new kinetic reaction window खुलती है
identification में name में ethyl acetate प्रविष्ट करें
अब description प्रविष्ट करें irreversible reaction for synthesis of ethyl acetate from ethanol and acetic acid
अगला भाग components stoichiometry and reaction orders की सूची है
पहला column name यहाँ उपलब्ध compounds दिखाता है
दूसरा column इसके molar weight के समान है
अगला column include है include में सारे check boxes को check करें
चौथा column bc है bc में ethanol check box को check करें क्योंकि ethanol base component है
अगला column stoichiometric coefficients है
stoichiometric coefficients column में ethanol के लिए1 प्रविष्ट करें
acetic acid के लिए1
water के लिए 1 और ethyl acetate के लिए 1 और फिर enter दबाएँ
stoichiometry field में हम देख सकते हैं यह ok दिखा रहा है
यहाँ equation field reaction equation दिखाती है
अगला column do है
हम अभिक्रिया को प्राथमिक मान रहे हैं
अतः do column में ethanol के लिए 1 प्रविष्ट करें
acetic acid के लिए 1 प्रविष्ट करें और फिर enter दबाएँ
अगला column ro है
चूँकि हम एक irreversible अभिक्रिया मान रहे हैं तो यहाँ हम कुछ भी प्रविष्ट नहीं करेंगे
then comes kinetic reactions parameters फिर kinetic reactions parameters आता है
हमारा rate molar concentration की terms में है
अतः हम basis में molar concentrations चुनेंगे
यदि पहले से चयनित न हो तो fase में liquid चुनें
tmin में 300 प्रविष्ट करें
tmax में 2000 प्रविष्ट करें
अब direct and reverse reactions velocity constant पर जाते हैं
direct reaction में a के लिए 0005 प्रविष्ट करें
ok पर click करें और chemical reactions manager window बंद करें
अब flowsheet पर continuous stirred tank reactor प्रविष्ट करते हैं
object palette पर जाएँ
unit operations में continuous stirred tank reactor पर click करें
इसे flowsheet पर drag और drop करें
अब इसे आवश्यक की तरह समायोजित करें
और फिर एक output stream प्रविष्ट करें
वह करने के लिए एक material stream को drag करें
एक बार फिर इसे समायोजित करें
उस stream को अनिर्दिष्ट छोड़ दें
हम इस stream का name बदलकर product करेंगे
आगे हम एक energy stream प्रविष्ट करेंगे और इस stream का name energy करेंगे
अब हम उस continuous stirred tank reactor को उल्लिखित करने के लिए तैयार हैं
बायीं तरफ हम एक टैब देख सकते हैं जो cstr से सम्बंधित विशेषताएं दिखा रही है
connections में inlet stream के सामने वाले dropdown पर click करें
आगे outlet stream 1 के सामने वाले dropdown पर click करें और product चुनें
फिर energy stream के सामने वाले dropdown पर click करें और energy चुनें
अब अगले section calculation parameters पर जाएँ
यहाँ पहला विकल्प reaction set है default रूप से default set है
आगे calculation mode के सामने वाले dropdown पर click करें और isothermic चुनें
फिर reactor volume के सामने वाली field पर click करें और 014 प्रविष्ट करें
अब हम simulation now करेंगे
अतः टूल बार से solve flowsheet button पर click करें
जब गणनाएं पूर्ण हो जाएँ तो flowsheet में continuous stirred tank reactor पर click करें
cstr के property editor window से results section पर जाएँ
general time में residence time पर click करें
tab conversions टैब पर जाएँ
यहाँ ethanol के लिए कन्वर्जन 995% है और acetic acid के लिए यह 955% है
अब insert menu पर जाएँ और master property table चुनें
master property table पर double click करें
configure master property table window खुलती है
name में results – continuous stirred tank reactor प्रविष्ट करें
object type में material stream प्रविष्ट करें
default रूप से material stream पहले से ही चयनित है तो हम इसे नहीं बदलेंगे
properties to display में object में product और feed चुनें
property में सभी parameters को देखने के लिए नीचे जाएँ
अब propertiesमें निम्न चुनें
liquid phase mixture volumetric fraction
molar flow mixture/ethanol
mass flow mixture/ethanol
molar flow mixture/acetic acid
mass flow mixture/acetic acid
molar flow mixture/water
mass flow mixture/water
molar flow mixture/ethyl acetate
mass flow mixture/ethyl acetate
इस window को बंद करें
बेहतर द्रश्य के लिए master property table को घुमाएं
यहाँ हम product और feed के लिए सम्बंधित परिणाम देख सकते हैं
इसे सारांशित करें
इस tutorial में हमने continuous stirred tank reactor को simulate करना सीखा
cstr में अभिक्रिया के लिए conversion और residence time की गणना करना सीखा
नियत कार्य में निम्न के साथ simulation दोहरायें: भिन्नभिन्न compounds और thermodynamics
भिन्नभिन्न feed conditions
भिन्नभिन्न cstr dimensions और reaction kinetics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
spoken tutorial project team कार्यशालाएं आयोजित करती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें
इस forum पर अपने समयबद्ध प्रश्न post करें
fossee team dwsim में मौजूदा flow शीट्स के कन्वर्शन का संयोजन करती है
हम मानदेय और प्रमाणपत्र details हैं अधिक जानकारी के लिए कृपया इस site पर जाएँ
fossee team प्रसिद्ध किताबों के सुलझे हुए उदाहरणों की coding से संयोजन करती है
हम मानदेय और प्रमाणपत्र details हैं अधिक जानकारी के लिए कृपया इस site पर जाएँ
fossee team commercial simulator labs को dwsim पर स्थानांतरित करने में मदद करती है
हम मानदेय और प्रमाणपत्र details हैं अधिक जानकारी के लिए कृपया इस site पर जाएँ
spoken tutorial और fossee projects भारत सरकार के mhrd के nmeict द्वारा निधिबद्ध हैं
यह स्क्रिप्ट श्रुति आर्य द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं जया आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद